यहां पर एक आदमी चश्मा लगाए बैठा हुआ है।

और आदमी ने गले में कुछ पहना हुआ है।

और सामने दीवार पर बहुत से पर्दे लगे हुए हैं।

उनके पीछे कुछ काला काला सा जालीदार नजर आ रहा है।

यह एक बड़ी इमारत का चित्र दिख रहा है।

और सामने बहुत से पेड़ खड़े हुए हैं।

यह एक रेस्टोरेंट के बाहर का चित्र लग रहा है।

जहां पर बहुत से हिरण फिर रहे हैं।

और नीचे कुछ गट्टे भी पड़े हुए हैं।

यह एक बच्चों के खेलने के पार्क का चित्र है।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

और सामने एक इमारत भी बनी हुई दिख रही है।

और सामने एक जीना भी दिख रहा है।

और पीछे बहुत से पेड़ खड़े हुए हैं।

और सामने दीवार पर कुछ बेल लगी हुई हैं।

जिस पर एन_पी_एस इंटर कॉलेज लिखा हुआ है।

और पीछे बहुत से पेड़ भी लगे हुए हैं।

जहां पर दो व्यक्ति खड़े हुए हैं।

और एक कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है।

यह एक इलेक्ट्रिक स्कूटी का शोरूम दिख रहा है।

और बहुत से आदमी भी खड़े हैं।